जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

ये ट्रेडिशनल भी है और ये तरह-तरह के कलर और डिज़ाइन में बनी हुई हैं।

पीछे एक जॉल टैंक है जिसमें एक सीढ़ी बनी हुई है।